एक लाइट भी है और बाहर एक छोटा सा पेड़ खड़ा है।

यहां कुछ जाली की तरह डिजाइन बने हैं।

दो बेड पड़े हैं उनके ऊपर तकिये रखे हैं।

और अंदर पानी की टंकी है बाहर एक कुर्सी रखी है एक एल_सी_डी है और बैग भी रखा है।

यहां बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है।

और बाहर कुछ कुर्सी पड़ी है जिनपे कुछ आदमी बैठे हैं।

और एक बाल्टी भी रखी है और एक नल लगा है।

और एक स्टील वाली ग्रिल लगी है।

और उसके बाद एक बाउंड्री बनी हुई है।

और दीवार पर कुछ बोर्ड्स लगे हैं।

यहां एक काउंटर भी रखा है जिसके ऊपर एक बोतल रखी है।

यह एक मार्केट है जिसमें बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं।